यह एक मकान है इस मकान एक बड़ासा गेट है।

ऊपर में चार माइक एं लगाई गई है।

बगल में पेड़ पौधा भी है।

इस रोड पर एक बड़ा सा चित्र बनाया हुआ है।

इसमें बहुत सारा खिड़कियां बनाई गई हैं।

यहां पे काफी आदमी लोग हैं।

इस पेपर पे चित्र बनाया हुआ है।

बगल में हरा पेड़ है।

कलर से रंगा हुआ है।